होटल कूकी नाम लिखा हुआ दिख रहा है चद्दर साइड दिख रही है में।

मरकरी टाइप की दिख रही लाइटें दिख रहीं चबूतरा बना हुआ दिख रहा है।

हनुमान जी की दुर्गा जी की काली जी की कृष्णा भगवान की पहाड़ दिख रहा है पीला कलर --

लाइटें लगी दिख रही है छतो पर टंकी वगैरा दिख रही है ग्रीन --

कलर दिख रहा सूरज दिख रहा पिंक पीला नीला --

आम के पत्ते टंगे हुए दिख रहे हैं ग्रीन पीली रेड व्हाइट कलर की बोतल रखी हुई दिख रही है।

फूल दिख रहा है पीले रेड --

एक सैनिटाइजर की बॉटल दिख रही है स्टूल ब्रैंच पे।

पिंक कलर भी दिख रहा उसमे हल्का सा --

पौधी लगे हुवे दिख रहे हैं छत पे दो-तीन जेंट्स दिख रहे हैं ईट गिट्टि लकड़ी --

मोटर वगैरा दिख रहे हैं खिड़कियां दिख रही है में कलर दिख रहे हैं।

आसमानी-ई-ई में कलर दिख रहा है पीला जामुनी वाइट नीला।

मछलियां दिख रही है रेड कलर की ब्लैक कलर की।

उम्म गाय खड़ी हुई दिख रही है घास खाते हुए दिख रही है।

पिंक कलर का एक मकान दिख रहा है।

स्टूल बेंच रखी दिख रही है होटल दिख रही है कार्ड चिपकी दिख रही है ऊपर बहुत सारे।